इसके आस-पास बहुत से सोफ़े रखे हुए है और यहा पर एक सुनहरे कलर का सोफा भी दिख रहा है और यहा पर पीले और सफ़ेद कलर के कपड़े दिख रहे है।

यहां एक जगह है जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारी हरियाली दिख रही है इसके आस-पास बहुत सारी सफेद करके कुर्सियां दिख रही है।